फ़ोटो खिचाने वाला पैलैस है |

ये एक ग्राउंड है जिसपे फील्ड तरह का मारुती सुजुकी पिक-अप है ये कोई प्ले ग्राउंड है जहाँ एक --

हां ये एक्सरसाइज क्लासेस चल रही है एक छत पर चल रही है बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं जो एक्सरसाइज कर रहे हैं बच्चों के साथ-साथ बड़े भी है इसमें शामिल हुए हुए।